गाइस यहाँ पे दो ऑटो रखे हुए है और बीच में कुछ लोग बीच में कोई दो लोग खड़े हुए हैं और टेंट टाइप है लाइटें जल रही है और व --